चित्र में एक लाइव स्टैशनेरी दिख रही है जहाँ पर कापी किताबे कवर पेन पेंसिल पेपर कवर सभी समान दिख रहा हैं।

इसमें हाजीपुर स्टेशन दिख रहा है जिसके बाहर कई रिक्शा खड़े हुए हैं।

का मेला लगा हुआ है गाड़ियां दिख रही है लोग जा रहे है। आ रहे है।